सामने एक मूर्ति दिखाई दे रही है जो महाराजा एम.एस. सिंह देव की है।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारी हार्पिक की बोतल और बहुत सारी कई प्रकार की चीज़े रखी हुई नजर आ रही है।